स्टूडेंट है और स्टूडेंट पुस्तक खरीद रहे है।

और यहाँ बहुत सारे पुस्तकों का भीड़ है।

स्‍कूल है यहां पर बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता है।

यह तस्‍वीर बहुत बड़े स्‍कूलों की है जहां की बहुत सारे गाड़िया लगी हुई है।

वह एक हां और इसमें ब‍हुत सारे साफ-सफाई का भी खास --

खेत ही खेत दिखाई दे रहें हैं और यह फसल बहुत लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छा लग रहा --

और कपड़ा लत्ता अच्छा लग रहा है देखने में। देखने में अच्छा लग रहा है। आगे में फोर व्हीलर लगा हुआ है।

जिनके ज्ञान तर लगे हुए हैं और --

कारोबार को अधिक फैलाते हैं और इनसे कुछ लाभ कमाते--